रोड के काले कलर में दिखाई दे रहा है उस --

यहाँ पे झूले रखे हुए हैं।

नीचे एक कांच की खिड़की लगी हुई है।

में पानी भरा हुआ हैं।